सामने में पानी दिखाई दे रहा है। एक बहोत बड़ा नदी है और बहोत साफ़-साफ़ पानी दिखाई दे रहा है इसके साइड में बहोत सारे --

यहाँ सामने एक पहाड़ी इलाका जैसे दिख रहा है बहोत सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे पानी गिर रहा है उप्पर से।

ये तो यहाँ पे कपड़ा रखा हुआ है और टांगा हुआ है। बीच में लिखा है --

अजीब सा कलर में दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है। एक बड़ा सा --

रेड कलर का जाजिम जैसा बिछाया हुआ नीचे फर्श में दिखाई --

खाने वाला भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ फूल --

सामने में यह फिल जैसा दिखाई दे रहा है या फ़िल्म में कु --

पौधे भी दिखाई दे रहे हैं छोटे बड़े हैं और यहाँ पे --

अ बॉउंड्री के पीछे में बहोत सारे पेर -पौधे दिखाई दे रहे। कुछ चाले जैसे ई बनाया हुआ --

और यहाँ पे धुँधला धुँधला सा दिख रहा है एक लम्बा सा कुछ दिखाई दे रहा है जो आसमान के तरफ --